इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई झील है। जिसमे ऊपर से झरना गिर रहा है।

इसे देख कर ऐसा लग रहा हैं कि दो दोस्त बैठ कर बैठे हैं और एक व्यक्ति फ़ोन से बात कर रहा और एक व्यक्ति फ्री बैठा हैं।

इसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपना सामान बे --

सुबह प्रार्थना करने के लिए थाली तैयार की गई है।

इसका नाम तक हेयर सलून है और इसके सामने लोग बैठे हैं। कुछ लोग शेविंग करवा रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं।